नीचे एक घूमने की जगह बनाई हुई है सीढ़ियां लगी हुई है गुब्बारे और लगे हुए पहाड़ जैसा बना हुआ है।

और यहां छोटे मोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं काफी पेड़ भी दिख रहा है।

पानी के नीचे एक तालाब बना हुआ है आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और हरी घास दिखाई दे रही है।

यह एक पुल की फोटो है यहां पास में समुंद्र बना हुआ है यह पुल समुंद्र के ऊपर बना हुआ है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे और टथर लगे हुए हैं।

यहां बहोत सारे लोग हैं जो ये मिठाई खरीद रहे हैं उनमें से एक लेडिस है।

ये नीचे पानी है और यहां खम् पानी के अंदर खंबे लगे हुए हैं पुल बनाया गया है ऊपर जहां से आने जाने का साधन है।

यहां पे ढोल ढमाके और मेन्यू रखा हुआ है यहां एक लड़की है जो खड़ी है और एक लड़का है जो पियानो बजा रहा है।

यहां पे गुब्बारे लगे हुए है दो लड़के है जो डांस के रहे है बर्थडे पार्टी की फोटो लग रही है और नीचे बेंच भी रखी हुई है।

बनी हुई है आगे आसमान दिख रहा है सुंदर नीला पास में एक बिजली का खंभा है जिसमें एक बड़ी लाइट भी लगाई गई है और एक स्कूटी भी खड़ी है।

ये एक लाल रंग की हवेली देख रही है जिसमें बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं दो मंजिल के दिखाया गया है।

यहां पे दुल्हन और शादियों के मेकअप किया जाता--

और यहां पे परचून की दुकान में फेविक्विक रबड़ पेंसिल भूजिए बिस्किट और चिप्स --